ब्राउनवूड रंग के टेबल के ऊपर एक काले रंग की प्लेट रखी हुई हैं प्लेट में तीन कोलियां रखी हुई है जीनका रंग सिल्वर हैं।

जो कुछ बोल रहा है पीछे उसके एक सफेद रंग का पर्दा लगा हुआ है जिसपे--

ये कोई गुफा लग रही है जहां पर--

ट्रॉली जा रही है जो फ्लाईओवर के ऊपर है।

ये ही एक बस लग रही है।

और उनके सामने एक बहोत बड़े टेबल रखे हुएं हैं।

जहां पर सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है जो बैंक्विट हॉल की बिल्डिंग है।

जो काले रंग का है दोनों किसी तरफ देख रहे हैं।

येहे कोई काउंटर लग रहा हैं ये काउंटर के बाहर का एरिया हैं जहां पर बहोत सारे लोग खड़े हैं।

कुछ ही लोगों के हाथ में एक छोटीसी बुक है।

पंखा लगा हुआ है सामने एक टेबल है जिस पे बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

किश्तियां जो है सफेद रंग की है उनमें कुछ हरा रंग भी है और कुछ किश्तियां लाल रंग की हैं पीछे बहुत सारी किश्तियां लगी हुई हैं।

और एक टेबल लगा हुआ हैं जिसने कुछ रखा हुआ हैं एक लाल रंग का कुछ रखा हुआ हैं।

जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है गाड़ी के बोनट को खोल के खडा है जो कि गाड़ी का रंग सिल्वर व्हाइट है गाडी को खोल के ये बोनट पे कोई --

यहां पर एक बहोत बड़ा टेबल है।